इस में गाड़ियाँ दिख रही हैं। पेड़ पौधे दिख रहे हैं। मोटर साइकिल भी दिख रही है। घांस दिख रही है।

इसमें गेंद और बल्ला दिख रहे हैं।